हई रिक्शा ह। हई ऑटो बा। ईन् पोस्टर लागल बा रोड बा आच्छा लागत --

ई रेलवे स्टेशन ह| पूरा इ लोहा क बनल बा| इ सीढ़ी ह ए पार से ओ पार जाए वाला बा |

और गुब्बारा बाटे पीला काला और व्हाइट कलर और बलफ बा। अरी अच्छा लागता। गिलास कांच के बा। होटल होटल हउवे।